एक दुकान दीखाया जा रहा है जहां पे बहोत सारी किताबें रखी हुई है ऊपर लाइट भी जल रही है और सिलेटी कलर का सीलिंग है।

एक घर दिखाया जा रहा है जिसका रंग पीला है यहां सात औरते खड़ी है।

मंडप दिखाई पड़ रहा है येलो और ऑरेंज कलर का है। यहां बहोत सारे चेयर और टेबल लगे हुए हैं।

टेबल में फूल का गुलदस्ता भीं रखा हुआ हैं साइड में सोफा भीं लगा हुआ है।

एक गेट दिखाई पड़ रहा है जिसका रंग हरा है उनके दोनों साइड पे एक एक पिलर लगा हुआ है।

रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा है एक टेबल है सोफा लगा हुआ है और दो स्मॉल सोफा लगा हुआ है।

पीछे टी_वी भी लगा हुआ है और साइड में एक ऐ_सी भी लगा हुआ है। एक रेड कलर का कुछ सोफा भी दिखाई दे रहा है और कुछ-कुछ पार्ट ब्लर भी है।

यहां बागीचा दिखाई पड़ रही है नीचे बहोत सारे खेत उगे हुए है ऊपर जाली भी लगी हुई है जाली का रंग हरा है।

साइड में एक टेबल भी रखा हुआ है दूसरे साइड में दो तीन गमले भी रखे हुए हैं जैसे कि सफेद काला--

बस का सीन दिखाई पड़ रहा है यहां पे बहुत सारी सीट लगी हुई है सारे सीटों का कलर --

यहां हमें बहोत सारे बकरियां दिख रही हैं यहां अलग अलग तरह की बकरियां दिखाई दे रही हैं जैसे कि सफेद--

बीच में एक पिलर लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे नकली के फूल लगे हुए हैं हरे और बैंगनी कलर का लाइट दिखाई पड़ रहा है।

और बोटल रखा हुआ है जिसका रंग हरा है साइड में यहां पर लिखा हुआ है हंगर्स हैकर --

हमें यहां एक बस दिखाई पड़ रही है जो यहां से जा रही है उसके ठीक पीछे एक इंसान खड़ा है।

यहां पुल का सीन दिखाई पड़ रहा है यहां दो तरह के पुल है एक गहरा और एक बिना गहरा।

साइड में वॉल का कलर सफेद है और ऊपर आसमान भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे बहुत हरियाली हो रखी है नीचे हमें बहुत तरह के गमले दिखाई पड़ रहे हैं जैसे लाल पीला नीला।

सामने एक बच्चा रो रहा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है।

और नीचे जींस वाली शर्ट्स पहन रखी है आसपास बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं।